और चेयर भी रखी हुई हैऔर लाइट भी लग रही है।

स्कूटी साइकल रखी हुई है और बहुत सारे पेड पौधे भी लगे हुए हैं।

और लाइट के छोटी-छोटी इसमें अ डोरी दी है बादल भी दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है और इसमें बहुत सारी लाईट भी लगी हुई है बहुत सारी लाइटिंग है और बहुत सारे इसमें अ जेन्स वगेरह दिख रहे है।

--रोड है और बहुत सारे पेड पौधे लगे हुए हैं और बादल भी दिख रहे हैं।